यह बकलब यह दीवार जो है वह थोड़ी पुरानी सी लग रही है।

यहाँ पर काफी पानी भी बांध में भरा हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन इतना पानी नहीं है की वे बांध के--

यह शिल्प कला का एक अ क त बहुत सुन्दर नमूना हम देख सकते है।

किसी का उपदेश या बातें सुन रहै है।

चित्र है यहाँ पर एक दुकान सी दिख रही है जो की खुली हुई है ।

यह द्रश्य बड़ा ही सुन्दर है।